ये घड़ी है। घड़ी में ऐसा होता है कि लोग थक जाते हैं तो टाइम देखने का काम आता है।

म बोल सकते हैं गोल्नमेंट -अ अ-बिल्डिंग है। यहाँ पे म् --

ह ओ चीज दिख रहे हैं जिससे आप संगीत में यूज़ करते है गाना गाते टाइम जो बहुत अच्छी धुन देती है।

ये लाल लाल तस्वीरें बहोत ही सुंदर लग रही हैं।

ये गेट से थोड़ा दूर की फ़ोटो है लेकिन सामने गुलमोहर का वृछ लगा है।

शादी अटेन्ड करने आए हैं लोग। बराती आए हैं जो शादी अच्छे से अटेन्ड कर रहे हैं।

ये हमारे एक मेले की फोटो रही है जोकि ऐती सारी लाइटे दिख रही है। यहाँ झूले दिख रहे है। बहोत सारे लोग दिख रहे हैं। भीड़ दिख रही हैं।

आ ए दो मंजिले का ये घर दिख रहा है।